तीन चार आदमी हैं देखो औरत निकलने की कोशिश कर रही है।

गुफा है पहले के जमाने में लोग ऐसे ही आते जाते।

ये पत्थर से बनी हुई है।

स्कूटी सामने दिख रही है ब्लू कलर की इनोवा है कार है।

इमेज प आपको दिख रही होगी फ ट्रेन रेन खड़ी है रेड कलर की रेड है वो और ये साइड में दुकानें हैं।

ये हमने देखो तितली पकड़ी है तितली दूर में खड़ी है हैं यहां बहुत सारे पेड़ वगैरा है ये एक जंगल है घना जंगल।

और ये पोस्ट ऑफिस से यहा पे पेमेंट होती है पैसे जमा कर सकते हैं अपने लोग ब्याज मिलता है उसका कोई है पोस्ट ऑफिस है यहां पे --

वहां आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दूर से जैसा कि हम देख पा रहे हैं कुछ बच्चे कोशिश पूरी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं।

होपिंग हैं पूरा ऊपर में तो वो डोर वगैरा है डोर्स आपको दिख रहा है ना।

रूम तक खिड़की विंडो वगैरा ऐसा कर के डोर है नीचे पूरा गेट है मेन गेट नीचे से है।

यह देखिए हमने इमेज ले रही थी तो ये जेंट्स भी यहां खड़े हो के इमेज लिवा रहे हैं एक फैक्ट्री है।

फैक्ट्री के ये खड़े हैं एल्लो कलर का कुछ लिए ए सा टाई ब्लॅक शर्ट्स --

ये देखिए ये खुला मैदान है जहां अभी ठंड के सीजन में जाया जाता है लोग जाते हैं खेलने जाते हैं।

जेंट्स है आदमी है कुछ --

यह देखिए डॉक्टर कंपाउंडर है जो की पेशंट का चेकअप करते हैं यहां तीन आदमी खड़े हैं।

सामने कुछ दीवार पे ऐसा लिखा हुआ है आपको जैसा इस इमेज में दिखाई दे रहा है बहुत सा बोर्ड हैं।

घर दिखाई दे रहा है पूरा व्हाइट कलर से पेंट हुआ है वो घर --

दो तीन तरफ रास्ते जा रहे हैं पेड़ दिखाई दे रहा है इसमें बारिश खूब हुई है लगता है।

ये देखिए यहा फैक्ट्री है जो यह लड़की काम कर रही है नापतोल की मशीन है लाइट जल रही है मतलब --

ये लोग अ कुछ बनाने की कला कर रहे हैं ग्रीन कलर का आपको पेन्ट दिख रहा है।

पूरे राउंड तरीके से उस रेड रेड कलर से उसको सजाया गया है बहुत से फ्लावर्स की कटिंग हुई हैं।

आदमी लोग घूम रहे हैं पेड़ पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं नीचे पूरा स्किपिंग वगैरह सब कुछ है।

ये देखिए बौद्ध भगवान का है जो पूरे ईंटों के बीचोंबीच ऐसे भगवान जी बैठे हैं ऊपर है नीचे हैं आपको जैसा इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है।

इतने सारे चेयर्स रखे हैं हुए हैं यहां पे जैसा आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर की कर्टन्स है कर्टन्स बोले तो पर्दा है पर्दे हैं और --

ये देख सकते हो यहां दो द्वार बने हुए है जो की शादी के लिए से सजाया गया है द्वार के ऊपर मतलब ऐसे --

ये आप आपको यहां आपको दो कार दिखाई दे रही है रेड कलर की है सामने बोल करके आइटम है हायर है सोनी का पूरा डेकोरेट किया हुआ है सोनी का है।

ये ठंड की सीन है देखो उस आदमी ने स्वेटर्स वगैरह जैकेट वगैरह सब पहना हुआ है यहाँ पूरे --

टाइमर हैं जो कि चल रहा है अभी टाइम में ग्यारा पांच हुए हैं।

ये देखिए यहा इमेज कराने के लिए इमेज क्लिक करने के लिए कितनी अच्छी फोटोग्राफ आई है उसको देखकर ऐसा लग रहा है मानो काफी सुंदर इलाका है ये।

पीछे पूरे ग्रे कलर से पोस्टर लगे हुए हैं ऐसे चील वगैरा के --

यहा शादी हो रही है शादी पर पाना स्टार्ट है लड़का देखो सर पर पगडी बांधे खड़ा है लड़की एकदम तैयार है मा बाप लड़की के खड़े हैं।